यह एक घर है जिसके सामने बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें टैक्स अकाउंट सर्विसेज लिखा हुआ है।

और यहां साइड में साइकल रखा हुआ है।

बाहर में आसमानी कलर का कार है और एक रेड कलर का कार खड़ा है।

और दो ए_सी दिख रहे हैं और बीच में छोटा पेड़ है।

बहुत सारे लोग और औरत खड़े हैं।